यहाँ चार पांच छत का रूम होगा और यहाँ पर मुझे लग रहा फैक्टरी है और यह पर जय बाबा--

यह एक बहुत बड़ा बैंक है इसके पे लिखा है इटेरल बैंक और ये बैंक कम से कम दो-तीन छत है और यहाँ पर--

सफेद कपड़ा पहने हुए है और वहाँ पर कम से कम तीस-चालीस व्यक्ति दिखाई दे रहें है जो पढ़ाई कर रहे है और साथ में कुछ-कुछ काम कर रहें है और यहाँ पर दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

यह बस स्टैंड है और इसमें कम से कम तीन बस दिखाई दे रहें है और साथ में पांच -छे व्यक्ति भी और उसके आगे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और उसके अंदर--

और यहाँ पर कम से कम दो-एकड़ में गन्ना की खेती किया गया है जो बहुत सुन्दर दिखाई दे --